पूरा हरा-भरा घास है पूरा नीला आसमान बादल है यहां पे एगो केला गाछ लगल है इधर केला गाछ --